यहा पर हम देख पा रहे है की ये शाम का समय है। आसमान पूरा क्लीन है। और सूरज है जोकि डूब रहा है और पीला पीला हो गया है। और बड़ा बड़ा पेड़ हैं। एक बिजली का अ टोअर है ऊपर।

यहाँ पे हम देख पा रहे है की लाइब्रेरी है जिस मे बहुत ही ज्यादा टे रैक पे बुक रखे हुए है और सारे रैक्स पे आ पोस्टर मे आ कागज मे कुछ लिख कर चिपकाया गया है ऊपर --

यहाँ पे हम देख पा रहे है की ये फल का दुकान है और जहाँ पे बहोत ही ज्यादा फल रखा हुआ है किसम-किसम का--

यहाँ पे हम देख पा रहें हैं की यहाँ पे दरवाजा का डेकरैशन हो हो रहा है और बड़ा बड़ा फूल गमला बनाया गया है यहाँ पे और उसमे फूल सजाया गया है ।